जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ है।

और कुछ लोग सामान खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं।

ये एक फ्लोवर बेस्केट की बड़ी सी दुकान है।

सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक गैरेज की पिक्चर है जहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

रेस्टोरेंट के अंदर कई सारी टेबलें और कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

गोल टेबलें और कुर्सियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये एक रंगोली की बड़ी सी दुकान है जहाँ पर कई सारे कलर और कुछ सामान मिल रहा है।

ये एक फार्म हाउस की फोटो है फार्म हाउस के अंदर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है।

पास में एकअ आदमी गाड़ी के अंदर काम कर रहा है।

और कई सारे औज़ार वगैरा भी रखे हुए है।

और कुछ गाड़ियां बाहर खड़ी हुई नजर आ रही है।

ये एक अ फ्रूट्स की बड़ी सी दुकान है।

ये एक मॉल की फोटो है मॉल में कुछ च खुद चलने वाले जीने लगे हैं।

कुछ बड़े बड़े कैमरे भी रखे हुए हैं।

ये एक चर्च की फोटो है जहां पर तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं।

ऊपर की तरफ हवाई जहाज में कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक किताबों की बड़ी सी दुकान है जहाँ पर कई सारी कॉपी और किताबें जमी हुई हैं।

पत्तियाँ और कुछ फ्लोवर रखे हुए हैं।

सामने की तरफ कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

जोकि एक जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति सामान वगैरह खरीद रहे हैं।

जहाँ पर कई सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक फार्म हाउस की पिक्चर है। जहां एक स्विमिंग पूल बना है। पास में एक घर जैसा भी बना हुआ है।

ये एक कॉलेज की पिक्चर है जो की मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नाम से बना है।

जोकि ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति और कुछ गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं।

जहाँ कई सारी कुर्सियाँ और टेबले रखी हुई हैं।

कुछ बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक लड़का सामने की तरफ खड़ा हुआ है।

सामने की तरफ एक बड़ा सा काउंटर बना है।

कुछ लोग मछलियाँ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शोरूम के अंदर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं।